यह देखने मे हमे एक आर्टिफीसियल लग रहा है।

कुछ लोग है ना सोफ़े पे बैठे दिखाई दे रहे हैं दूर कि और हम एक सी बीच भी देख पा रहे हैं जहाँ हमे कुछ लोग भी देखने को मिल रहे हैं देखने मे यह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा --

वही हम यहाँ कुछ लोगों को देख पा रहे हैं जिन्होंने छाता ओढ़ रखा हैं इसे देख हमें यह पता चल रहा हैं कि यहाँ पर बारिश हो रही हैं दूर में हम बहुत सारे पेड़ पौधे भी देख पा रहे हैं।

दीवारो पर भी हमें कुछ सूचनाए मशीनों के उप्पर लिखी हुई दिखाई दे रही है।

हमे एक दुकान दिखाई दे रहा हैं जिस के बाहर पर हम कही सारे समान राखे हुये दिख रहे हैं।

यहाँ मे एक शोरूम दीखाई दे रहा हैं जिसका नाम भी उपर पर रखा हुआ नजर आ रहा हैं यहाँ पे कुछ बलून लगे हुये देख पा रहे हैं।

जिनमे हम कुछ बिस्किट के पोस्टर्स कुछ आइस क्रीम के पोस्टर्स कुछ तेल के पोस्टर्स देख परे है साथ ही हमें यहाँ गाड़ी भी दिख रही है।

ये सारी गाड़ियां हमें अलग अलग कंपनी की नज़र आ रही है हम यहाँ पर कुछ बिजली के तार भी देख पा रहे है देखने मैं ये दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है।

वही हम यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां पार्क कि हुई देख पा रहे हैं ये सारी गाड़ियां हमे अलग-अलग रंग कि नजर आ रही हैं।